यहाँ हमें एक बोहोत बड़ा रूम दिखाई दे रहा है। रूम में काफी सारे जेंट्स एंड लेडीज़ है। ये सभी हमें एक्ससाइज या योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे सामने एक आईना लगा हुआ है। उसपे कुछ मुझे भगवान्स की फोटो दिखायी दे रही हैं। जस्ट ऊपर टीवी लगी हुई है।

यहाँ मुझे दो तीन नाव दिखाई दे रही है। नाव जो है पानी के किनारे पर जो है खड़ी है।

यहाँ सामने मुझे एक इन्सान दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर की कोट पहने हुए है। बैकसाइड में उनके पीछे लोहे से बने काफी बड़े-बड़े जाल दिखाई दे रहे हैं।

जो कि मल्टीप्लस कलर की टी-शर्ट पहने हुए। चेक कल चेक तरह की और ब्लैक कलर की पैंट ।

यहां हमें काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और लोगों के पीछे हमें जो ये छोटा सा घर दिखाई दे रहा है जिसपे टिन शेड बना हुआ है।

यहाँ हमें काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं ये हमे चर्च का व्यू लग रहा है।

सामने एक मुझे इंसान खड़े दिखाई दे रहे है जो रेड कलर की शर्ट ब्लैक कलर की पेंट पहने हुए है और ये मुजे किसी बस स्टॉप के साइड की व्यू लग रहा है।

यहाँ मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है। ये मुझे चाय की शॉप लग रही है जोकि काफी क्यूट सी है यहाँ पे काफी सारे कुल्हड़ बिस्किट्स टोस्ट जो है स्टॉल पे रखे गए हैं।

यहां मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है। दुकान का जो बैक साइड है वो पूरा ग्रीन कलर से पेंट दिखाई दे रहा है और जो बोर्ड है वो ब्लैक कलर से पेंट है।